रोड को देख पा रहे है जिसमें लगी हुई ट्रैफिक बिलकुल साफ़ और क्लियर नजर आ रही है जिसमें कुछ ज्यादा ही ऑटो खड़ी है और दुसरी तरफ बहुत सारी बाइके खड़ी हुई नज़र आ रही है।

हम देख सकते हैं पानी से भरी एक नदी जैसी कोई चीज है जहाँ पर हमें अ कोई ब्रिज के जैसा भी एक लोहे का पूरा ब्रिज नजर आ रहा है।

जो की लाइन से रेट करते हुए थोड़ा रेस्ट करते हुए वहां पर आराम फरमा रही है और हमें कुछ लोग भी नजर आ रहे है बस के आस-पास जो कि शायद उनके ड्राइवर वगैरह होंगे।

बात करे तो यहाँ पे हमें बोहोत सारे पेड़ देखने को मिल रहें है जिनकी हरी-हरी पत्तियां बोहोत ही प्यारी लग रही है दोनों तरफ फैली हुई है बोहोत ही शानदार तरीके से और नीचे की ओर जाता हुआ एक और एक और हमे द ढलान जैसा कुछ देखने को मिल रहा है।

सामने की ओर हमें कुछ ऊंचे-ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं और उनके आगे और ऊंचे पर्वत है और ऊपर की तरफ खुला आसमान देखने को मिल रहा है जो की काफी प्यारा लग रहा है देखने में।

बात करें तो यहां हमें व्हाइट छत देखने को मिल रही है फिर लटके हुए दो चार फैन हमें नजर आ रहे है वहां पर हमें लाइटिंग भी नजर आ रही है लाइटिंग जो अ पुरे कमरे मे उजाला फैला रही है।

पिक्चर में हम बात करे तो यहां हमे ज्यादा पौधे नजर आ रहे है हरे-भरे से और बीच में भरा हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी देखने को मिल रहा है।

और हमें एक जमीन देखने को मिल रही है जो की बहुत सी मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं क्योंकि मिट्टी जो खोदी गई है वो जमीन से ही खोद के वहाँ पर साइड में रखी गई है पीछे की तरफ हम देख सकते है कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं हमें इंजीनियर साहब हमारे टोपी लगा के --

और सामने की तरफ हमें बिल्डिंगे नजर आ रही है जो की काफी प्यारी लग रही है। क्रीम कलर की बिल्डिंगस हैं वो और बहुत ही प्यारी लग रही है। पीछे की तरफ हम एक ट्रांसफार्म को देख सक --